देखिए ये बड़ा सा पहाड़ है पहाड़ के तीनों तरफ से--

देखिए इस कमरे में दो आदमी आमने-सामने खड़े हैं।

देखिए सायत ये बंगला है बंगले की पैतरी पर गमलों में छोटे-छोटे।

ऊपर दो मेहराब सरी बना है बड़ा बड़ा एक छोटा नीचे दरवाजा है ऊपर टेरेस वगैरह भी है।

बहुत ढेर है इनके अंदर कांटे जैसा पैर दिख रहा है।

देखिए ये किसी चीज की ऑफिस है बाहर।

ऊपर कुछ लगा हुआ है कांच का आधा बना हुआ है पोस्टरों पर भी कुछ ना कुछ लिखा दिख रहा है।

देखिए एक बड़ा सा ओटा बना हुआ है उस पर तीन लकड़ी की बड़ी बड़ी पटरी रखी है।

देखिए दो आदमी खिड़की के पास चेयर पर बैठे हैं।

देखिए यहां पर पांच लोग बैठे हुए हैं।

देखिए यहां पर दीवारों में ताक जैसा बना हुआ है।

देखिए इस दुकान में बहुत सारे बैग एसस्कूल बैग टांगे हुए हैं।

फूलों से सजा है अंदर गार्डन जैसा है गेट के बाहर दो हीरो हौंडा खड़ी है।

देखिए यहां पर एक बड़ा सा टेबल है वहां पर चार पांच चेयर रखी हुई है।

टाल वगैरह दिख रहे हैं बोतल वगैरह रखी है।

लगे हुए हैं थम्स अप वगैरा की भी बोतल दिख रही है।

सोफे और चेयर वगैरह दिख रही है यह तकिया वगैरह भी दिख रही है फैन वगैरह भी लगे हुए है।

देखिए यहां पर ऑफिस दिख रही है फैतरी पर दो-तीन लोग बैठे हैं।

देखिए यहां पर तीन चार चेयर रखी हुई है चेयर पर बहुत ही।

देखिए यहां पर बहोत ढेर सारी टी चीजें--

टांगी हुई है यहर कलर की है बाक्स वगैरा भी रखें हैं शायद इसपे भी कुछ चीज रखी हुई है।

देखिए सामने बड़ा सा घर नजर आ रहा है घर के सामने बहुत ही सारे--

बना हुआ है मंदिर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

कुछ कच्छी रोळ बरी --]

देखिए ये शायद हॉस्पिटल है इस खाली कमरे में।

बाहर दो मोटर खड़ी हुई है बहुत सारे हीरो होंडा भी खड़ा है एक आदमी भी खड़ा है।

एक आदमी दुकान के बाहर खड़ा है एक होंडा खड़ी है होंडा पर एक आदमी जा रहा है।

ऊपर भी कुछ दरवाजे सारी बना है नीचे एक लड़का खड़ा है।

देखिए ये बगीचा है दो हंडा थोड़ी-थोड़ी दूर पर खड़ी है बगीचे में जाने का रास्ता दिख रहा है।